एक घर है तीन मंजिला बना हुआ नीचे फोर व्हीलर खड़ा है दो गो।

पीछे थोड़ा दूर में घर है एक दो बिजली का खंभा लगा हुआ है।

एक लड़का खड़ा है उसके बगल में मग वगैरा रखा हुआ है.

दुकान में सारा सामान रखा गया है पंखा चल रहा है ऊपर लाइट जला हुआ है।

जहां पे पानी तो भी कम है.

और नदी के उस पार बहुत घने जंगल टाइप का है।

और रात का समय हे कुर्सी पे भी एक दो आदमी बैठे हुए हे अंदर गुब्बारा लगा हुआ हे बहार गाडी खड़ा हे.

मछली मार्किट हे शायद जहा पे बहुत सारे मछलियां रखे हुए हे.

ये एंट्री गेट है एक आदमी जा रहे हैं और बगल में एक आदमी खड़ा होके कुछ देख रहे हैं।

बगल मैं पेड़ है बहुत सारे अच्छे-अच्छे पौधा भी एकदम हरा भरा है.